यहाँ पे बहुत बड़ा घर बना हुआ है जिसकी रेलिंग भी है नीचे गेट लगे हुए है नीचे एक गेट भी लगा हुआ है।

यहाँ पर सामने रोड दिखाई दे रहा है जिसके पिछे मंदिर जैसा बना हुआ है और एक कार भी है बाजू में एक पेड़ लगा हुआ है।

सामने एक डिब्बे रखे हुए है और कुछ लोग भी है सामने बहुत सारे चेयर रखे हुए है।

बाजु में बहुत सारी पेला भी लगी हुई है पीछे छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

जिनके के पीछे एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है उसके पीछे एक टावर बना हुआ है।

मकान में कांच लगा हुआ है सामने वहा सामने गेट लगा है उपर रेड रेड कुछ लिखा हुआ है उपर बालकनी जैसी है।